यहाँ साइड में एक बिल्डिंग है| आगे भी एक बिल्डिंग है| यहाँ ऑरेंज कलर का बाइक भी लगी हुआ है| यहाँ ऑरेंज कलर का कार भी लगा हुआ है।

साइड में पूरा बाइक भरा हुआ है| एक आदमी जा रहा है सीढ़ी से| यहाँ पे बहोत सारे बिल्डिंग भी बने हुए हैं | पीछे एक सूखा पेड़ भी है।

यहा एक वाशिंग सेंटर है यहा लाल कलर के होंडे का गाड़ी धुवा रही है यहा एक पाइप भी लगा हुआ है गाड़ी धुआने के लिए यहा गाड़ी भी ऊंचा हो गया है।

यह एक जिम है| यहाँ पर डंबल रखे हुए हैं| यहाँ एक घर भी बनाया गया है| यहाँ पे ब्लू कलर का पेंट किया गया है| यहाँ पे एक लाइट भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का |

बीच में एक गार्डन बना गया है बीच में एक मूर्ति भी लगाई गई है साइड में एक गेट भी है बहुत सारे साइड साइड पेड़ में भी पेड़ भी लगे हुए हैं बीच में एक गार्डन है साइड में ग्रीन कलर का बिल्डिंग है।